और यहां पर दो आदमी भी खड़े हुए हैं और एक गाड़ी में घुसा हुआ है कार मे काम कर रहा है।

और ऊपर में करकट है जो वाइट कलर का है।

यहां पर बहुत सारे आदमी लोग खड़े हैं।

यह एक घर का दृश्य है यहां पर नीचे में बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं।

और सामने में एक ब्लू ब्लू कलर का भी अंदर में पैक है।

सामने बहुत बड़े बड़े गाड़ी भी पार हो रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं ।

और यहां पर सामने में चेयर रखा गया है जो लोहे का मदद से बनाया गया और प्लास्टिक का मदद से ।

और जिसका टेम्पो का कलर रेड है और एक टेम्पो कलर ब्लैक और रेड है।

और सामने बहुत सारे टायर रखे हुए हैं।

सामने मे टेबुल है जो सोफे और लकड़ी का मदत से बनाया गया है।

और सामने में पर्दा लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।

और एक टेंपो भी पार हो रहा है एक आदमी हाथ में झोले लिए हुए पार हो रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

सामने में दीवाल है जिसका कलर व्हाइट है ।

सामने में आदमी भी लोग भी दिख रहे हैं।

और रैक में बहुत अच्छा तरीका सामान सरियाया गया है।

और बहुत सारे लोहे से ऊपर भी करकट बनाए गए हैं और एक लाइट भी दिख रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

और एक बात ही भी हरा कलर का भी घास टाइप का बनाया गया है चटाई वो भी दिख रहा--

यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे खिड़की बने हुए हैं।

जो रेड और वाइट कलर का है और सूरज भी दिख रहे है और बादल भी दिख रहे है जो वाइट और भुरा--

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर नीचे में टाइल्स लगे हुए हैं।

सामने में एक रखा गया है जिसका कलर बुल्लु है।

जिसमे कुछ लगाया नहीं गया है और सामने में एक तिरपाल भी खिड़की में फसाया गया है जो पीला और व्हाइट कलर का है।